यहां पर एक घर है घर का एक दरवाजा है।

और एक नह नहरें है जिसमें को पानी चल रहा है।

और यहां पे दो बड़े गेट और है।

तीन किताब रखी है यहां पर दो बंदे खड़े हैं।

यहां पर मौसम घटा का हो रहा है और यहां पर पानी गहरा गहरा मटियाले से रंग का है।

रोप में चौखुंडे वाली लाइट लगी हैं ब्लैक रंग हो रहा है कितने सारे बलफ़ लग रहे हैं।

एक लोहे की ग्रिल है सड़क के बीचों--

वो कमरे के ऊपर दो लाइट है एक बड़ी लड़ी है और पर सामने पर ग्रे कलर का रंग हो रहा है और मट्टी कलर का भी हो रहा है।

यहां पे एक स्कूटर है जिसमें दो लोग बैठे हैं मफलर पहंध के तीन चार लोग बरे फिर रहे हो--

टेंपो का रंग आगे से सफेद लाल है और पीछे से बिल्कुल लाल है और सफेद अक्षरों में नंबर लिखा हुआ है और आगे नंबर आगे भी लिखा हुआ है।

कुछ और सी_एन_जी लिखा हुआ है हरे रंग में और ए_आई_पी लिख रहा हुआ है तिरंगे के रंग में और लाइटें हैं और--

यहां पे छे आदमी बैठे हैं।

कुछ बैगनी कलर की शर्ट पहन रखी है और यहां पर किताब के ढूंढ लग रहे हैं।

यहां पर एक साउंड बना हुआ है लाल कलर के बोर्ड पे दो और यहां पे सामने पे एक टेबल रखी है।

र सामने शीशा लग रहा है जिसमे मै अपने आप को चेक कर रहे डांस करते हुए।

एक आदमी फ़ोन लेके वीडियो बना रहा है और यहाँ पे दो तीन चार बल्ब लटक रहे हैं और एक दीवार है जिसपे लाल रंग का कलर हुआ है और उसपे सफ़ेद सफ़ेद से गोल बन रहे --

और दुकान है जिसमें तीन मंजिली है एक परचून की है एक फास्ट फूड की और एक नीचे पे चाय वाला है जिसमें दो तीन भगौने रखें हैं।

थमले लगे हुए हैं और बराबर में कुछ पेड़ हैं और यहां राजीव लिखा है राजीव भाई।

यहां पे एक खंभा है।

एक आदमी बैठा है बाइक पे पल्सर पे।

यहां पर एक लुगाई चल रही है जिसने काले कलर की छतरी प पकड़ रखी है और उसके नीचे खड़ी है।

नीला रंग हो रहा है और अंदर में काउंटर है।

यहां पे एक मशीन है इसके आगे दो तीन ड्रम रखे हुए हैं।

और यहां पे चीनी की झील है ऊपर में कुछ छप्पड़ है लोहे का और यहां पे हरा रंग हो रहा है।

नीचे पे फरस पड़ा हुआ है और कुछ पेटिकोट लटक रही है और सामने में कुछ लाइटिंग लग रही है।

हरा रंग हो रहा है ग्रिल लग रही है उसके नीचे जिना है और यहाँ पे एक ईंट लग रही है लाल सफ़ेद रंग की।

सामने पे कुछ घासे उग रही है पीछे कुछ सफेद सफेद सा--

यहां पर एक साइंकल का रेडा खड़ा है साइंकल --

जिस पे कोई एक तार जा रहा है।

सामने पे गुब्बारे लगे हुए हैं और--

यहां पे योगा हो रहा है सामने पे स्टैंड रखा हुआ है फोन का एक छोटा एक बड़ा है और छह तस्वीरे--

और सामने पे कुछ रंग हो रहा है और यहां पे पूरा सो रहा है।

सामने पे कुछ पीलापन है और यहां पे हरे वो काल काए कलर की--

फोम रखा है और यहां पे सफेद रंग की भी टाइल है। सामने पे एक घर बना हुआ है जिसके ऊपर लोहे का ग्रिल है और --

और उपरली साइड भी एक पहाड़ है।

उसके अंदर चार पांच लोग बैठे हैं कितने सारे और कई सारी लड़कियां बैठी हैं।

एक हाथ धोने का वाश वो ब्रुश रखा हुआ है।